viewing a presentation पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगे:
view options और उनके उपयोग
master slide
slide के लिए layouts
यह tutorial ubuntu linux os वर्जन 1804 और libreoffice suite वर्जन 635 का उपयोग करके recorded किया गया है
presentation sampleimpress odp खोलें जिसे हमने सेव किया है
यह file आपके लिए इस tutorial पेज पर code files link में प्रदान की गई है
कृपया file को download और extract करें
एक copy बनाएं और फिर इसका अभ्यास के लिए उपयोग करें
libreoffice impress में कई view options हैं जो एक अच्छी presentation बनाने में मदद करते हैं
यह normal view है
यदि presentation किसी any view में है तो normal tab पर क्लिक करके normal view पर आएं
अब सीखते हैं कि slides का डिजाइन कैसे बदलें
slides pane में slide titled overview पर click करें
दाईं ओर पर sidebarपर जाएं
master slides named section पर click करें
master slides में यहां 3 sections हैं
used in this presentation recently used और available for use
इस विशेष presentation में उपयोगित slide डिजाइन used in this presentation में दिखाई देता है अब इसे बदलें
available for use section से अपनी पसंद का कोई भी slide डिजाइन चुनें मैं classy red slide डिजाइन चुन रहा हूं
workspace में slide के डिजाइन में हुए बदलाव पर ध्यान दें देखें कि slide डिजाइन बदलना कितना आसान है
ऊपरी दाएं कोने में x पर क्लिक करके master slides section बंद करें
अब हम outline view देखेंगे
workspace में outline tab पर click करें
वैकल्पिक रूप से हम menu bar में view menu पर क्लिक करके outline view देख सकते हैं
फिर outline विकल्प पर click करें
outline view में सभी slides table के कंटेंट की तरह एक के बाद एक व्यवस्थित हैं
workspace में प्रत्येक slide बाईं ओर पर slide number के साथ thumbnail के रूप में प्रदर्शित होती है और slide heading thumbnail के आगे प्रदर्शित होती है
ध्यान दें कि overview slide heading चिन्हांकित है
वह दर्शाता है कि हम overview slide में थे जब हमने outline tab चुना
प्रत्येक वाक्य के आगे bullet points के रूप में इन काले dots को देखें
जब आप इन bullet points पर mouse घूमाते हैं तो cursor हाथ में बदल जाता है
अब सीखते हैं कि slide में line item को पुनःव्यवस्थित करने के लिए ऊपर और नीचे कैसे करें
overview slide में line item explain the long term course to follow चुनें
ऊपरी बाईं ओर में formatting bar पर जाएं
move up named up arrow icon पर click करें
ध्यान दें कि चयनित line item एक स्तर ऊपर हो गया है
फिर से ऊपरी बाईं ओर में formatting bar पर जाएं
move down named down arrow icon पर click करें
ध्यान दें कि चयनित line item एक स्तर नीचे हो गया है
हम चयनित line items को पूरी slides में स्थानांतरित भी कर सकते हैं
formatting bar में फिर से down arrow icon पर click करें
ध्यान दें चयनित line item अब short term strategy शीर्षक वाली slide पर चला गया है
ctrl + z कीज़ दबाकर इन बदलावों को अन्डू करें
हमारी presentation फिर से इसके मूल रूप में प्रदर्शित होती है
अब हम slides को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए slide sorter view का उपयोग करेंगे
workspace में slide sorter tab पर click करें
वैकल्पिक रूप से आप menu bar में view menu पर क्लिक करके slide sorter view देख सकते हैं फिर slide sorter विकल्प पर क्लिक करें
यह view इच्छित क्रम में slides को sort करने के लिए उपयोग है
slide number 3 पर click करें और slide को slide number 2 के आगे खींचें
अब slide sorter view में कहीं भी click करें
ध्यान दें कि दोनों slides पुनर्व्यवस्थित हो गई हैं
इन बदलावों को अन्डू भी करते हैं
अब हम notes view देखेंगे
workspace में notes tab पर click करें
वैकल्पिक रूप से हम menu bar में view menu पर क्लिक करके notes view देख सकते हैं फिर notes विकल्प पर क्लिक करें
notes view में हम notes लिख सकते हैं जो हमें हमारी presentation के दौरान मदद करेंगे
workspace पर slide के नीचे click to add notes textbox पर click करें
इसके अंदर कुछ text type करें जैसे यहां मैं कर रही हूं
अब textbox के बाहर कहीं भी click करें
जब हमारी slides projector पर प्रदर्शित हो जाती हैं हम तब भी अपने monitor पर अपने notes देखने में सक्षम होंगे
लेकिन हमारे दर्शक उन्हें projector screen पर नहीं देख पायेंगे
tab फिर से normal tab पर click करें
हम impress window की दाईं ओर पर sidebar को या तो छिया या दिखा सकते हैं
ऐसा करने के लिए menu bar में view menu पर click करें
फिर sidebar विकल्प को check या अनचेक करें
यह तदनुसार दाईं ओर पर sidebar को छिपाएगा या दिखाएगा
अब सीखते हैं कि slide के layout को कैसे बदलें
sidebar से properties section पर click करें और फिर layouts properties पर जाएं
फिर title content over content layout पर जाएं और इस पर click करें
यह slide के layout को बदलता है
वैकल्पिक रूप से standard toolbar में slide layout icon drop down पर click करें
किसी भी layouts पर क्लिक करके आप slide का लेआउट बदल सकते हैं
अब save icon पर क्लिक करके हमारे द्वारा हमारी presentation में किए गए बदलावों को सेव करें
इसी के साथ हम इस spoken tutorial के अंत में आ गए हैं संक्षेप में
इस tutorial में हमने निम्न के बार में सीखाः
master slides और slides के लिए layouts
नियतकार्य के रूप में practiceimpress odp फाइल खोलें
master slides का उपयोग करके slide 3 का slide डिजाइन बदलें
slide संख्या 2 और 3 में बदलाव करें
slide 4 का लेआउट title and 2 content करें
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
हम spoken tutorial का उपयोग करके कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया अपनी समयबद्ध queries को इस forum में post करें
spoken tutorial project mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है
इस tutorial का योगदान मूलरूप से 2011 में desicrew solutions pvt ltd द्वारा दिया गया था यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं जया अब आपसे विदा लेती हूं धन्यवाद